छोटे बड़े पंखे लगे हुए हैं बगल में बहोत सारे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लगे हुए हैं।

एक सब्जी मंडी का लग रहा है जहां पर रोड पर बहुत साड़े --

इस फोटो में एक जिम सेटअप देखा जा रहा है।

फोटो में एच_डी_एफ_सी का बैंक देखा जा रहा है।

केले बेच रहे हैं जो आधे कच्चे आधे पके है।

उन्होंने मुंह पर गमछा भी बांधा हुआ है और वह पुल पर खड़े--

इस फोटो में बहुत सारे बैट और बाल दिख रहे हैं जिसमें--